जिस पर दो व्यक्ति खड़े हो कर बात कर रहे हैं।

और यहाँ पर डेनिम लिखा हुआ है।

यहाँ पर हम देख रहे है की एक मकान में एल_फ_डी_एस_सी बैंक ओपन है।

सीढ़ियों पर एक फादर्स खड़े दिखाई दे रहे है।

म्म जोकि एक बीच में लेडीस है।

नदी के ऊपर एक पूल भी दिखाई दे रहा है।

एक लड़की बजा रही है।

एक हाथ आगे किये हुए है।